यहाँ पे बहुत सारी घास भी लगी है यहाँ पे छोटे बड़े पेड़ हैं यहाँ का एक बड़ा सा दरवाजा है और ये यहाँ पे एक आ छोटी-छोटी घास बड़ी-बड़ी घास भी है।

यहाँ पे घास लगी हुई है इसकी दीवारे कुछ सफेद कुछ हरी कलर की है यहाँ सफेद दरवाजा है यहाँ बहुत सारी खिड़किया भी हैं।

यहां लाल कलर की चप्पल हैं यहां पे बहुत सारे मजदूर है यहां पे पिलर डले हैं यहां पिलर लगे हुए हैं पीछे बहुत सारे पेड़ हैं यहां मजदूर जो कि काम कर रहे हैं।